बहुत बड़ा सा मॉल देख पा रहे हैं जो मॉल के बाहर लिखा हुआ है सिटी कंपलेक्स हम देख पा रहे हैं मॉल के नीचे छोटा -छोटा और भी दुकान है।

जिसमें लिखा हुआ है एफ.एम. ब्रदर्स । ए ह हमारे यहाँं पुराना कपड़ा भी खरीदा जाता है और ऐड्रेस भी दिया हुआ है फोन नंबर भी दिया हुआ है।

दोनो तरफ ग्रीन है ग्रीन ऑरेंज और वाइट कलर किए हुऐ हैं और दीवार पे राउंड राउंड शेप के डिजाइन किए हुऐ हैं पेड़ भी हैं बड़े बड़े।

यह हम देख सकते हैं छोटा-छोटा करके छे --

बड़ा सा प्लेग्राउंड है और अम प्लेग्राउंड के बीच बीच में व्हाइट कलर का मार्क किया गया हुआ है।

हैं जो घास खा रहे हैं। छोटा-छोटा पेड़ है। म् और म् छोटा-छोटा घ-अं घास भी है । छ बड़ा-बड़ा घे भी है आस-पास में हम देख सकते हैं।

ये एक दुकान है जिसके अंदर हम देख पा रहे बोहोत सारे कुर्ती बच्चे का फ्रॉक साड़ी बोहोत सारी चीजें हैं। एक पुतला है जीज़् जो अ कुर्ती और प्लाजो पहन के खड़ी हुई है।

ये ऑफिस के अंदर हम देख पा रहे हैं हर कर्मी के लिए छोटा-छोटा करके डिवाइड कर दिया गया है। एक छोटा --

और यह एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है और दोनों आदमी रेलिंग के ऊपर हैं ।